और जैसे कि यहाँ पे एक से एक बड़ी से बड़ी मशीन रखी हुई है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो मशीन है --

हाड़ी इलाके में यह जो यह जगह है यह काफी यहाँ पर और जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पारले जैसे कि यहां पे पीछे पहाड़ों पर पानी भरा हुआ है और यह --

एक काफी खूबसूरत महल बनाया हुआ हई जैसे कंपनी जिसको बोलते हैं।

इस तस्वीर में देख रहे हैं यहां पर जैसा कि --

एक मॉल है यहां पर गरम कपड़े वगैरा और इस तरह के मिलते हैं और बच्चों के भी मिलते हैं जैसे कि छोटे-छोटे जो होती हैं।